इसमें मुझे कार खड़ी दिख रही हैं।

इसमें मुझे कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

केले के ऊपर छोटे पौधे लटकते दिख रहे हैं।

इसमें मुझे बहोत सारे ड्रॉज बनी दिख रहे हैं।

इसमें मुझे मिलाल मॉल दिख रहा है।

इसमें मुझे बुक्स कॉपियाँ दिख रही हैं इसमें मुझे पेन दिख रहे हैं।

इसमें मुझे वन मंथ इंटरेस्ट लिखा दिख रहा है।

इसमें मुझे कुछ लोग बाहर खड़े दिख रहे हैं।

इसमें मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं।

इसमें मुझे कुछ घर दिख रहे हैं।

इसमें मुझे बाहर गाड़ियां दिख रही है।

इसमें मुझे रिसेप्शन हॉल दिख रहा है।

इसमें मुझे बहोत सारी लकड़ियां रखी दिख रहीं हैं।

इसमें मुझे एक ए_सी लगा दिख रहा है।

इसमें मुझे ब्लाउज टंगे दिख रहे है।

इसमें मुझे नदी में पत्थर दिख रहे हैं।

इसमें मुझे सौम्या का कलेक्शन दिख रहा है।

इसमें मुझे दो टीचर खड़े दिख रहे हैं।

इसमें मुझे गार्डन बना दिख रहा है।

इसमें मुझे अनारदाना जलते दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक लड़का खड़ा दिख रहा है।